के पिक्चर है जिसमें गांधी जी की पिक्चर मूर्ति बनी हुई--

ये बहुत ही बड़ा हॉल है जो कि एक दुकान पे--

ऊपर एक और दुकानें बनी हुई हैं ये--

कपड़ों का बहुत ही बड़ा शोरूम है।

बड़े बड़े सोफे रखे हुए हैं ये--

बहोत ही बड़ी वैन रखी हुई--